ऑफिस है सड़क है लोहे का गेट लगा हुआ है बॉउंड्री है पेड़ लगे हुए है बॉउंड्री के ऊपर मे लोहे की रडे लगी हुई हैं।

एमआई का सर्विस सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है नीचे खिड़की है जिसमें लोहे की राडें हैं।

टेबल के ऊपर में कंप्यूटर रखा हुआ है एक बुक्स रखी हुई है।

नदी है वहाँ पे ढेर सारे लोग दिख रहे हैं मंदिर है घर है झाड़ है बिजली के तार है बिजली के खम्बे हैं।

एक बड़ा-सा गेट लगा है उसमे एक लोहे का गेट भी है। तीन कारे खड़ी हैं।

नीचे मे लकड़ी के बाड़ी है।